ये तलाब है तलाब के अंदर मछलिये है और काई जमी हुई है।

अं और बहुत सारे लैंप वाली लाइटें लटकी हुई हैं नीचे व्हाईट कलर का फर्श है।

अं बाल खोल के पर्स हाथ में ली हुई है और हाफ सेट पेहनी हुई है।